ये एक पुल है जिस में पाच खम्भा है पानी बहुत तेज बह रहा है।

जिसका गाड़ी नंबर है डब्ल्यू बी चौहत्तर फॉर के ये गाड़ी सफेद कलर का है यहां एक भाइपर लाइट लगा हुआ है।

काला बुगागि एक कार का गैरेज है जिसमे पांच छै गाड़ी लगा हुआ है फोर व्हीलर । यहां एक सफ़ेद कलर का गाड़ी लगा हुआ है।

यह ब्रेक डांस को जी का व्यक्ति खड़ा होकर हैपजामा पॅन्ट पहनकर सफेद कलर का जू----